कोई बड़ा हॉल नजर आ रहा --

बिल्डिंग के अंदर हुआ है बिका --

रही फोटो में मुझे कोई बड़ा ब्रिज --

की फोटो नजरें आ रही है।

सामने दिखाई दे रही फोटो में मुझे--

दी गई तस्वीर में बहुत --

दी गई तस्वीर में एक रेलवे प्लेटफार्म --

सामने मुझे एक सरकारी कार्यालय नजर आ रहा है।

महिला के स्टैचू के पास एक --